पीछे एक कार भी खड़ी नजर आ रही है और--

उसका नाम संगीत इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा लिखा हुआ है उस पर बजाज फाइनेंस के एक बोर्ड भी लगे है।